पूरा दुकान दिखाई दे रहा है और उसमे माला बने हुए हैं काफी सारे।

इस दृश्य मे ग्राउंड दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड को चारो तरफ से सजाया गया है। बीच में काफी सारे टेबल्स --